इस तस्वीर में बहोत सारे बाइक दिखाई दे रहे हैं।

आदमी खड़े हुए हैं बाहर।

दिखाए गए पिक्चर में लाइट जल रहा--

इस तस्वीर में बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में तीन बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं।

कुछ आदमिया भी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में बहुत सारे तामुन के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर दिखाए गए पिक्चर में बहुत सारे फूल हैं।

इस तस्वीर में बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल दिखाई दे रहे हैं।

एक आदमी बाइक से कुछ समान लेके जा रहा है।

टेबल पर कुछ किताबें रखी हुई हैं।

पे एक आदमी एक बच्चे को बिठाये हुए हैं।

इस पिक्चर में एक नदी है।

एक बड़ा सा मकान है उसके पीछे--

बिल्डिंग के नीचे दो दुकान दिखाई दे रहे हैं।

पंखा घूम रहा है ।